जहां से ये लोग सीढ़ियों से--

उतर रहे हैं और यहां पर--

बाहर कई सारी चप्पलें रखी गई--

ये एक ऑफिस है इसके सामने पराग मिल्क दूध डेरी है।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

जैसे कार हो गई बाइक हो गई ये सब यहां बच्चों के मिलते हैं।

और यहां पर कई सारे टैंकर भी खड़े हुएं--

और यहां पर कई सारे पौधे व पेड़ भी दिखाई दे रहे--

इ इस साइड लिफ्ट है और यहां पास--

यह एक रेस्टोरेंट का दिखाया जा रहा है।

यहां पं पंखा भी लगा गया है।

पीले कलर के रेड कलर के और बहुत सारे फूल है।

यहां पर एक मॉल दिखाया जा रहा है।

इसपे लोग आकर एक्सरसाइज करते हैं।

यहां पर यह एक बेडरूम दिखाया जा रहा--

यहां पर कई सारे तकिए भी रखे हुए है यहां पर इसके ऊपर एक बैग भी रखा हैं।

यहां पे पुरुष और महिला भी हैं यहां पर एक आदमी फोन पे बात कर रहा है।

यहां पर लैपटॉप नहीं कंप्यूटर भी रखा--